ये एक कालो अ ये एक कालोनी है | यहाँ बहुत सारे मकान दुकान खड़े हो रखे है | दुकानें सजा रखें है | कही पे फूलों की माला कही पे कपड़े टुकड़े टाक-टके पड़े है और बहोत सारे लेडीज जेन्ट्स खड़े हो रखें है |

यहाँ पर एक ये दुकान है। दुकान में एक लड़का बैठा हुआ है हाथ में उसने मोबाइल ले रखा है।

बड़े ब-बारात घर सा दिखाई दे रहा है। दो तीन मंजिला चो मंजिला है और रात का समय है नीचे बच्चे लेडीज जेंट्स खड़े हो रखे है और --